आगे की साइड में भी एक अंकल दिखाई दे रहे है और ये अंकल के पीछे रेत पड़ी हुई दिखाई दे रही है बहुत सारी

इस पिक्चर में एक फुटबॉल का ग्राउंड दिखाया गया है जिसमे अ--

इस पिक्चर में दिखाया गया है की यह एक--

और निचे अअअ शटर दे रखा है जो की लगा हुआ है और एक चैन गेट भी दे रखा है जो की लगा हुआ है जिसमे दो ताले है और ऊपर घर है।

का ए_टी_एम दिखाया गया है जोकि सीयुबी ब्लू कलर में लिखा हुआ है और रेड में ए_टी_एम लिखा हुआ हैं ।

यह तस्वीर एक स्कूल की दे रखी जो की बोहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रखी। और इसके एक गेट भी दे रखा है। और इसके आस-पास--

पुल और एक स्टूल रखा एक बाइक खडी हुई पास में बाइक खडी हुई उसके पास में एक अंकल खड़े हुए है।

और जो किसी ने गोगल्स पहन रखा है किसी ने नही पेहन रखे है और सभी ने शूज पहन रखे है और सभी ने--

खटिया रखा हुआ है बीच में और उसमे थोडा सा पानी दिख रहा है और यहाँ पे पाइप दे रखा है।

छोटी-छोटी सी घासे दिखाई दे रही और ऊपर एक पेड़ दिखाई दे रहा जिसके टेहेनियाँ लटकी हुई दिखाई दे रही है। और कही दूर--

नोट्स लिखा हुआ है बोर्ड में और यहाँ पे बोहोत सारी बुक्स पेन वगेरा--